यहा हम देख सकते है यह एक बहुत खूबसूरत लग्जरीयस कैफे है पूरा यह ब्लॅक कलर का कैफे है।

गमले रखे हुआ है ढेरों ढेर जिनमे भी पेड पोधे नहीं है कूछ में पेड पौधे है।

काफी ये सभी एक्जाम देने आए हुए है देखिए अंदर गाड़ी जा रही है और साइड से भी खड़ी हुए है बाहर।

बहुत ही बड़ी एक यूनिवर्सिटी है गोवा की काफी पुरानी लग रही है इसमें पेंट भी हल्का-हल्का हो रखा है।

इस ब्यूटीफुल से दृश्य से हम कह सकते हैं यह काफी नॉर्थ साउथ गोवा का नज़ारा है।

काफ़ी यहाँ पे मोटे मोटे पत्थर रखे हुए नदी के बीचों बीच भी उनके पानी साइड से निकलता हुआ जा रहा हैं।

हम ये कह सकते है ये तस्वीर देख के यहाँ पर एक कैमरामैन है यहाँ क्रिकेट का आरंभ होने वाला है वे सारी स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है सीटे है ब्लू और लाल रंग की।

बहुत ही सूंदर इसमें पेंट हुआ है बहुत अच्छीसी डिज़ाइन काफी ऊँचा है ये बैठने के लिए बेंचेस भी है साइड से और बिचमें भगवान भी बैठे हुए है।

इस तस्वीर में हम देख रहे हैं यहां एक बोट है उसपे लाइट लगी हुई है साइड से भी एक आदमी बैठा हुआ है ।

इस दृश्य में हम देख सक यहा पे एक बहुत ही कॉमर्स साइंस एंड फॉर वूमेन एक गोवा साइड का कॉलेज है।

यहाँ हम देख सकते है इस दृश्य में बहुत हि सुन्दर तरीके से यहाँ गुलाब के फूल रखे गए है।